जो की एक शायद सीढ़ी पे एक छोटे सिस्टम पे चढ़ा हुआ है और सामने की और देख रहा इसके आगे पीछे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

आगे में कुछ दूर तक घास ही हैं और उसके आगे में देखा जाये तो एक बड़ा सा बिल्डिंग हमें अ देखने को मिलता है जो कि सफ़ेद रंग का है और उसके बीचों-बीच में एक अ बाड़ा सा गेट है और ये शायद किसी कॉलेज का है।

इस फोटो में हम देख सकते है की यहाँ पे एक पुराना सा घर बना हुआ है जो की पत्थरओ का है |

पुला है जो की बांध टाइप का बना हुआ है और उसके जस्ट आगे में दूसरे किनारे पे देख सकते है दो -तीन पेड़ लगे हुये हैं और उसके बगल में कुछ घर टाइप का जो है वो बना हुआ हैं।